एक बड़ा सा खंडहर नजर आ रहा है। जो की लाइट पिंक कलर का है।

और इस साइड में पेड़ लगे हुए हैं | मिट्टी की जमीन हैं |

इस पिक्चर में बहोत सारे स्टेचू रखे हुएँ हैं। जिसके नीचे एक लायन का स्टेचू है। ऊपर एक लेडी का स्टेचू हैं। उसके अगल - बगल भी स्टेचू बने हुए हैं।

यहाँ की साइकिल खड़ी हुई है पेड़ के नीचे बहोत सारे पेड़ है और एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।